ये भी एक मस्जिद ही है जिसके बाहर सीढ़ी लगाया गया है ऊपर चढ़ने के लिए ग्रीन ग्रीन और वाइट कलर की है।

शाम का घीचा हुआ फोटो है जो जिस शाम सूरज ढल रहा है ऊपर में जो देख रहे हैं नेचुरल लाइट है।

जो देख रहे हैं मजीद है मजीद में से एक आदमी नमाज़ पढ़कर या कुछ भी कर के बाहर निकल रहा है एक गेट दिया हुआ है। मैन गेट --

सामने देखे दीवाल है दीवाल के बहार दो पे दो-दो पेड़ लगाए गए हैं | पेड़ को चारों तरफ से घेर दिया गया है सामने ईंट रखा हुआ है।

एक इस्टेडियम की तरह है | और उसमें काफी सारे लड़के दिख रहे हैं जो इ अपना जॉगिंग कर रहे हैं ।